यह सितारा देखते हुए लगता है कि एक मेला है जो सितारा लगे हुए। आप इसपे चढ़ सकते हो भी इस चीज को कर सकते हो। इसके आनंद ले सकते हो। खेलने के लिए बोहोत सारी चीजें हैं। बोहोत ही अच्छी लग रही है। यही है बहुत अच्छा लगा --

रोड बन रहा है कि इसके पीछे में जो रोड है वो जो सफ़ेद कलर की पट्टी रोड पे लगाई गयी है वो सब देखे तो बहोत ही खूबसूरत लगता अयोध बहोत सारे व्यक्ति इस ड्रेस में हैं जो सिविल इंजीनियर हैं। इस इन रोडों को ठीक करने की काम कर रहे हैं। एक टेम्पो जा रहा है लाल कलर का जिसमें नीला कलर का वो नहीं है।

और एक है। एक ही जगह पे कट्ठा खड़े हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगल बगल के हरे हरे घास को बहोत देखते हुए। घर बहुत बड़ा --

व्यक्ति घर से पैर पकड़े हुए ग्लव्स लिये हुए है। ये मास्क पहने हुए इसके नीचे में जो जिसके --

यहाँ पे जिस प्रकार सजाया गया है यह ऑफिस बनने वाली इसमें ए.सी. लगा के लगा के को बीच में लगा के को सेफ रखा जा सके और ये घर को चारों तरफ से हर प्रकार की चीजें लगाई गई जिन्हें आप देख सकते हो समझ सकते हो। एक ऑफिस टाईप का है जिस प्रकार ऑफिस की सारी कामें हो सकती है। कर सकते हो।

भीम यू.पी.आई. भीम यू.पी.आई. का मतलब है उसे पेमेंट करने के लिए आप फोनपे से कर सकते हो व्हाट्सप्प से कर सकते हो पेटीएम भेज दिए बैंक से भी कर सकते हो और किसी प्राइवेट कंपनी के मोबाइल से भी आप कर सकते हो। बोहोत अच्छी चीज है।

यहाँ पे बहोत सारे लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। चारो तरफ ग्राउंड के द्वारा है और गेट दिया गया है जिसके अंदर जाके आप खेल सकते हो। बहोत सारे लोग अपने-अपने खेल में खेल रहा है कोई बैठा हुआ है कोई आपस में बाते कर रहा है। कोई इधर-उधर जा रहा है। सब अपनी बातो में मगन है सब अपनी कामो में मगन हैं।

बहुत सारी भीड़ है। यहाँ इसके बगल में बहुत सारे पानी है। बहुत सारे इधर उधर लगे हुए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो इधर से उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बैठा है कोई आपस में --

और ये घर जो है बहोत अच्छी है। के द्वारा बनायीं गई --

मैं भी जब स्कुल में पढ़ता था मैं इसपे फिसलने में बहुत मज़ा लगता था। इस प्रकार मैं भी इसका आनंद लेता था और जो बहोत अच्छी चीज है। इसपे कोई भी फिसला जा सकता।